ये बाजू एक पर्स आदमी जे_सी_बी एक देख दिख रही हैं।

वो देखने को व्यू बहुत सुंदर है बहुत सच्चा है।

यह रास्ते में एक रिक्शा जा रहे हैं और एक गणांतर द्वारा दिख रहे।

ग्राह गार्डन फुल ग्रीन ग्रीन है। बहोत सुंदर देख रही है सुंदर दिख रही है। ये फ्लावर का कलर लाल है।

रूम में ए_सी है कैमरा सी_सी कैमरा है टी_वी है।

और बैठने को सोफा सेट है और पढ़ने को एक टेबल है एक चेयर है।

शोरूम देख रहे है अंदर एक आदमी बैठे है समसंग फ्रिज और ए एल_जी --

नीचे एक कार है कार का कलर व्हाइट है और क्या तो क--

एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बॉडी लोशन दूसरा बॉडी लोशन देख रहे हैं।

और बेबी का बैग देख रहे है प्लास्टिक डब्बा देख रहे है।

एसो बच्चा स्पोर्ट्स खेल रहे है दो लड़कियां हैं आठ बच्चे है वो उसका वाटर बॉटल देख रहे हैं।

अंद बाहर बैठे अंदर पिंक है।

पिंक चेयर है बहोत सुंदर किया कपल से वजये किया बहोत सुंदर दिख रहे--

ये बहुत फिश देख रहे हैं ये फिश सोब मर गया।

एक वाटर पार्क है दिस पोल ओनली फैमिली अलोडेड --

एक वाटर पार्क है स्विमिंग पूल है और इधर स्विमिंग पूल में तीन बच्चा स्विमिंग करें--

बुक स्टेशनरी शॉप में एक आदमी उन कस्टमर को--